येलो साइड ऑरेंज साइड वाला लड़का घूम रहा है ऊपर देखोगे कि आप--

देख सकते हो की ट्रेन के सामने एक पटरी लगी हुई है। पटरी के सामने एक दीवाल है दीवाल के पीछे के एक रॉड लगी हुई जाके --

कंगी रखी है सामने देखो सामान रखा हुआ है हरि कलर की थैले में।

देख सकते हो कि ये फैलून फ़्लोन सलून है सलून के नीचे देखो सामने एक ऐना लगा हुआ है उसके सामने एक कार खरी हुई है उसके बाजू मे एक व्यक्ति है जो एक और कार व्हाइट कलर की खरी --

बच्चों के आस पास देखोगे बहुत सारे बच्चे हैं स्टेट में देखो कि ये बलून्स लगे हुए हैं ऑरेंज सफेद हरे ऊपर देखोगे एक पंखा लगा हुआ है।

बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है आजू बाजू पेड़ से घिरा हुआ है और देखेंगे मकान के नीचे बहोत सारे गमले लगे हुए हैं गमले के सामने क्योंकि व्यक्ति कुछ काम कर रहे हैं।

उसके अंदर एक दो लाइट कलर के घर में ऊपर देखने लाइट लगी है शाम का टाइम है।

देख सकते हो एक कैफे है कैफे के बाजू में एक लक लड़का खड़ा हुआ बैठा हुआ है उसके बाजू में--

कैडबरी वाला फ्रिज रखा हुआ है काउंटर में उसके बाजू में देखोगे कि कि--

थालिया रखी है खाने का पुरा समान रखा हुआ पीछे देखो की एंटी टवचा।--

ये जंगल है आजू बाजू बहोत बरे बरे पेड़ लगे हुए हैं और आस पास देखो कि हिरन के है हिरन खरे --

क्यूंकि चट्टान के नीचे एक व्यक्ति फंस चुका है और एक अंदर चट्टान के अंदर जा रहा है चट्टान के बाहर देखो --

देख सकते हो कि ये एक एक मैदान है जहां सामने एक--

पीछे देखो कि दो आदमी लोग घूम रहे हैं आजू बाजू लोग बहुत सारे खड़े हैं ऊपर देखो कि सजावटें लगी हुई है।

पेड़ लगा हुआ है इसके बाजू में पेड़ लगा हुआ है नीले कलर की दीवाल है ये।

देख सकते हो कि स्पोर्ट क्लब ऑफ जबलपुर लिखा उसके बाजू में देखो बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं पेड़ के बड़े बड़े पीपल के पेड़ लगे हुए उसके बाजू में एक खंभा भी है।

वेडिंग स्स स्स स्पा है देखो किनारे क कत्थे कलर की दीवाल लगी है सामने देखो स्पा के काउंटर है काउंटर के ऊपर देखो कि कलर का पुता हुआ--

देख सकते हो ये पिक मे एक मकान है मकान के सामने देख रहे हो कि बालकनी लगी हुई इसके बाजू मे सरेंट ओवर है आजु बाजू डब्बे रखे हुए है एक ड्रम रखा हुआ है नीले कलर का डि--